इस चित्र में एक बहोत बड़ा सैलून का दुकान है जिसमें बाहर में चेयर लगा है और अन्दर में चेयर लगा है।

और एप्रोन टंगा हुआ है हैंगल में एक बाइक बाहर में खड़ी हुई है।

और ऊपर में बी बड़ी-बड़ी रॉड दिखाई दे रही है डंडी रॉड की --

इस चित्र में एक बहुत बड़ी सी--

जिसमें नीचे में आलू प्याज टोकरी में रखे गए हैं बगल में एक टेलर्स का दुकान है।

एक पंडित है जो पूजा कर रहा है।

और नीचे वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है।

और दीवार पे कुछ गैलरी जैसा बनाया गया है।

इस चित्र में एक बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस का बिल्डिंग है जिसमें पोस्ट ऑफिस --

और कुछ बलूंस भी टंगे हुए हैं।

अगल बगल ऊपर नीचे कुछ रस्सी रस्सी तार तार से बंधी हुई है एक मशीन है

बड़े छोटे छेटे झींगा बहुत सारी मछली रखी गई है इस पर।

जिसमें एक आदमी पैदल चलते हुए जा रहा--

बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे है।